यह तस्वीर एक बिल्डिंग का है जिसका नाम प्रधान टावर है।

सभी ने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए यह तस्वीर ली है।

घरों में बहुत सारे एशिया भी दिखाई दे रही हैं बैंक के कोने में एक कुर्सी भी लगी हुई है जो बैठने के काम है।

सामने की ओर प्लास्टिक की बास्केट भी रखी हुई है जो सामान उठाने के लिए उपयोग की जाती है।

फर्श पर ईंटे भी पड़े हुए दिखाई दे रहे--

दीवार पर लाइटे पंखे लगे हुए हैं सभी बच्चे काले रंग के वस्त्र को धारण किए हुए हैं।

एक शिक्षिका सामने डेस्क के पास खड़ी दिखाई दे रही है।

तस्वीर किसी रेस्टोरेंट का है।

अस्तो के किनारे ईंटो से घेराव किया गया हैं।

ऊपर की तरफ एक बड़ा विशालकाय छायादार पेड़ दिखाई दे रहा है।

पर कई सारे ठंड के कपड़े जैसे स्वेटर महिलाओं के लगे हुए हैं।

काउंटर पर काफी सारी पानी की बोतलें भी रखी गई हैं।

इस बास के पुल का लोग इस्तेमाल नदी के इस छोर से उस छोर जाने के लिए की रहे --

यहां पर एक सीमेंट का पुल भी है जो कि अभी चालू नहीं है।

एक व्यक्ति ए_सी के दूसरे हिस्सों को सफाई कर रहा है।

टेबल पे पानी की बोतलें तथा पानी के गिलास भी रखी हुई हैं।

यहां लगे हुए शीशे पर जलती हुई लाइटों का प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में काफी सारे दुकानें दिखाई दे रहे हैं जिनके सारे शटर अभी गिरे हुए हैं।

सामने की ओर बैठने के लिए स्टैंड लगे हुए हैं जो काफी लंबे--

बगीचे के इर्द गिर्द काफी बड़े बड़े पेड़ है जो काफी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर एक सफेद रंग का मकान भी दिखाई दे रहा है उसके सामने एक बिजली का खंभा भी है।